और इस तले के अगल-बगल कई स एक ग्राउंड भी बना हुआ है और इस ग्राउंड में कई सारे लोग कई सारे लोग आते हैं और इस ग्राउंड के अगल-बगल कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।

यह द्वार है कई सारे लोग खड़े हुए हैं और इस मंदिर के अंदर कई सारे लोग जा रहे हैं।

जाली वगैरह लगी हुई है और ये लंगूर जाली के बगल में एक बड़े सा पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और इस लंगूर के बगल में कई सारी छोटी-छोटी धास भी --

और इस लॉज के बाहर कई सारी गाड़ी वगैरा खड़ी हुई है और इस लॉज के बाहर कई सारी सजावट भी करवाई गयी है और इस लॉज के अंदर कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी लगे हुए --

इस वाटर पार्क में कई सारे लोग नहा रहै हैं ऐसा लग रहा है की यह वाटर पार्क नया खुला हो। इस वाटर पार्क में अगल-बगल कई सारे बलून वगेरा भी लगे हुए हैं।

और इधर ऊपर से झरना बेह रहा है और झरने के बगल में एक व्यक्ति इस चट्टान पर बैठा हुआ है और ये पानी बहुत स्पीड से गिर रहा है।